लाइट लगी हुई है एक घड़ी दिखाई दे रही है।

तस्वीर में एक सोफा दिखाई दे रहा है जिस पर दो--

ये हर तरफ खंबे है।

इसके पीछे कुछ सामान पड़ा हुआ है और एक पाइप नजर आ रहा है।

पिलर दो रंग के है लाइट ऑरेंज ए और व्हाइट --

जमीन पर छोटी छोटी घास है।

तीन लाइनें बनी हैं जिनमें--

टी-शर्ट पहनी हुई है और मास्क लगाया है।

इस तस्वीर में बहुत सारी मालाएं दिखाई दे रही हैं जो सफेद और लाल गुलाब के फूलों से बनाई गई हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ी टेबल नजर आ रही है जिस पर कुछ बॉक्स रखे हुए हैं और कुछ सामान रखा हुआ है।

नदी में नाव है नाव पर तीन लोग बैठे हुए हैं।

एक गमला रखा हुआ है।

कैफे का दरवाजा कांच और शीशे का है। कैफे की दीवारें --

तस्वीर में नदी के ऊपर एक बड़ा पूल बना हुआ है।

टेबल के सामने दीवार है जिसका रंग सफेद है।

जिसके दाहिनी तरफ की दीवार की शेल्फ कांच की है और सामने की तरफ की--

हर टेबल पर नंबर लिखे हुए हैं टेबल के पास एक एक कुर्सी है जिनका रंग काला है।

टेबल के सामने कुछ फाइलें रखी हुई हैं।

मंदिर में गणेश जी की मूर्ती है।

मूर्ति के नीचे कुछ छोटी मूर्तियां है।

यहां पर एक लकड़ी का ब्लैक बोर्ड है।

जो हरे रंग का है दरवाजे पर कुछ गोल डिजाइन बनी हुई है।

बंती हुई बिल्डिंग दिखाई दे रही है एक बोर्ड नजर आ रहा है।

यूनिवर्सिटी का गेट है जिस पर महर्षि यूनिवर्सिटी इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। महर्षि का --

पर कुछ लाइटें लगी हुई हैं और कैमरे लगे हुए --

इस तस्वीर में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिस पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लिखा हुआ है।

बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं बाहर थोड़ी जगह --